पर्दे लगे हुए हैं।

कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

आसमान में बादल हैं।

एक नर्सरी दिख रही है।

गमले रखे हुए हैं।

ये एक रेस्टोरेंट है।

पंखा नजर आ रहा है।

काफी सारे रंग दिख रहे हैं।

पेड़ों में फूल लगे हुए हैं।

पार्क बना हुआ है।

मस्जिद का रंग सफेद है।

छत पर पाइप डले हैं।

कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

कुछ लोग नज़र आ रहे है।

इस चित्र में कुछ औरतें खड़ी हैं।

आदमी नजर आ रहे हैं।

कुछ फोटो लगे हैं।

सेंटा क्लास नजर आ रहा है।